और इनको बांध के रखा हुआ है।

इसमें बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है एस_बी_आई बैंक ।

इसमें बाहर कुरकुरे लगे हुए हैं।

इसमें कुर्सी भी है जहां डॉक्टर बैठे--

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।